यह मूर्ति का मोर भी मार्बल से बना हुआ है और इसकी बांसुरी तो और भी सुंदर तरीके से बनाई गई है।

यह म्यूजियम में सालों-लाखों पुराने सामान इन सब म्यूजियम में मिल जाते है यहाँ पर छोटे-छोटे सामान को एक शीशे के अंदर रखा जाता है।

यहाँ पर बच्चे लैंप डिब्बा बनाते --

यह स्कूल सी.बी.एस.सी. स्कूल है | यहाँ पर प्लस टू के भी बच्चे पढ़ते है यहाँ पर लाखों बच्चे इस स्कूल में आकर पढ़ते है | यह स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है ।

यह एक फैशन प्वाइंट है।